और पतला शीतला गेट है ने छोटा सा मंदिर है दीवाल में टाइल्स भी लगा हुआ है ने और अंदर मे लाइट भी जल रहा है।

और जो गार्डन है वो बिल्कुल साफ-सुथरा हैं। हरे-भरे है। मंदिर मे से पुराने है।